कैमरे लगाए गए है बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए है और यहां पास--

यहां पास बहोत समानो को लकड़ी के फर्नीचर में टंगाया गया है साथ में यहां पास कुछ खाने पीने का सामान भी है।

यहाँ पर बहोत से लोग खड़े हुए हैं आलू पे मिट्टी लगी हुई हैं और यहाँ पार्क में बहोत सारे --

पर बहोत से लोग खड़े हुए हैं चारों ओर घर बनाए गए हैं।

और यहां पास बहोत सारे समानों को डिब्बों के अंदर रखा गया है।

सोफे रखे हुए हैं यहां पास एक हॉस्पिटल बनाया गया है और यहां तीन से चार ए_सी लगी हुई है।

यहां पास बहोत से लोगो कुछ सोलर पैनल चढ़ा रहे हैं और ये छत में बनाया जा रहा--

इस फोटो में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के पास में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं चारों ओर घर बनाए जा रहे हैं और यहां पर कुछ दुकानें भी हैं दुकानों के बाहर बहुत सारा सामान रखा हु--

वहां पास हरे कलर का ग्राउंड है यहां पास बहुत सारे लोहे की जाली लगायी गयी हैं और नेट लगाया गया है कुछ लोग यहां पर बैठे हैं।

इस फोटो में मुझे ए बहोत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पास बोहोत से लोग खड़े हुए है चारों ओर--

इस फोटो पे मुझे दुकान दिखाई दे रही हैं साथ में यहां पर--

यहां पर बहोत से लोग बैठे हुए है साथ में यहां पास कैमरे लगाए गए हैं और ट्रैफिक लाइट लगे हुए है।